इस फोटो में मुझे दरवाजा खिड़की दी--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

इस फोटो में मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे टायर दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे शेरवानी और कोट दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक गैरज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे फूबो की सजावट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे चाय की टपरी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।